अंदर की तरफ बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

और कुछ बच्चे एक्सरसाइज कर रहे है।

यहाँ टेन सीड है और टीन शेड खंभे पर खड़ा हुआ है।

यहां एक सड़क है सड़क के किनारे एक मंदिर बना हुआ है।

यहां गुलाब के फूल लगे हुए हैं।

सामने कई सारे बोर्ड लगे हुए हैं।